बहुत सारा लोग खाई हुई हैं और ये होटल बहुत मस्त से लाइटो से सजाया गया है और सामने एक पानी का सीन बनाया गया है और बहुत सारा लाइट लगाया गया है।

करते है और यहाँ बहोत सारा लाइट और बहोत सारा पंखा और का मशीन लगा हुआ है और तीनो आदमी एक दुसरे का हाथ पकड़ कर फोटो ले रहा है।

और जो गेट में है उस दीवार में बहुत टाइल्स लगाया गया है।